इस चित्र मे टेबल पर कुछ समान रखा हुआ दिख रहा है आसपास कुछ लाल कुर्सिया भी रखी हुई है सामने बहुतसारे बच्चे बैठे हुए दिख रहे है।

इस चित्र मे एक बडा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मे कुछ महिलाये योगा करती हुई दिख रही है।

इस चित्र मे तीन बच्चियाँ डान्स करती हुई दिख रहैं हैं इनके पीछे काले कलर के पड़दे लगे हुए हैं।

इस चित्र मे एक हॉल दिख रहा है हॉल मे कुछ महिलाए योगा करते हुए दिखाई दे रही है।

इनके पीछे एक बड़ा सा गेट दिख रहा है एक के छोटा गेट और खिड़की भी लगी हुई है।